मुझे इस तस्वीर में सामने में एक बड़ा सा जनरेटर दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक बिल्डिंग का कमरा का हिस्सा दिखाई दे रहा है।

दीवार पर बहुत सारे फोटो फ्रेम लगा हुआ है।

ऊपर में लाइट और पंखा भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक फोन दिखाई दे रहा है।

ऊपर का नीला आसमान और सफेद बादल भी दिखाई दे रहा है।

एक आदमी का पैर भी दिखाई दे रहा है।

सामने में चमकता हुआ लाइट भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग का खिड़की और दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

ओने में एक लाल कलर का मशीन भी दिखाई दे रहा है।

सामने में बहुत सारा लोग भी दिखाई दे रहा है।

सामने में एक बकेट और मग भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।

में दो आदमी भी दिखाई दे रहा है।

सामने में लंबा सा स्टील रॉड भी दिखाई दे रहा है।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

मुझे इस तस्वीर में दो कुर्सी और एक टेबल दिखाई दे रहा है।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

सामने में टाटा मोटर्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने में एक गेट भी दिखाई दे रहा है।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

थोड़ी सी दूरी पर बड़े बड़े पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

नीला आसमान में सफेद बादल भी दिखाई दे रहा है।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

और उसके सामने न्यूज़पेपर भी रखा हुआ है।

और एक लाल रंग की कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।